यह फोटो किसी सेलून की लग रही हैं। यहाँ पर एक बच्चा अपने बाल कटा रहा है।

यह फोटो चर्च के बाहर का लग रहा है। यहां पर एक महिला फोटो खिंचवा रही है।

इसका कलर सोने का है और यह बोहोत ही सुंदर भी लग रही है। यहाँ पर बहोत सारे आदमी भी बैठे हुए हैं।

यह फोटो किसी जंगल का लग रहा है। यह जंगल बोहत ही घना लग रहा है। यहाँ पर यहाँ के पास एक समंदर भी है।

यह फोटो मेरेज हॉल का लग रहा हैं| यहाँ पर एक आदमी भी बैठा हुआ हैं।

अंदर बहुत सारे लोग कटिंग करा रहे हैं। यहां पर बोहत अच्छे बाल काटे जाते हैं।